पहाड़ दिख रहे हैं बीच में बहोत बड़ी नदी दिख रही है और ऊपर बादल छाए हुए हैं और बहोत ही सुंदर--

और ऊपर लाइट चली हुई है और लड़का सामने शीशे में अपना वर्क आउट कर रहा है।

लग रहा है बहोत सारे कमरे यहां पे बने हुए हैं।

ये एक बहुत ही बड़ी पार्क है बड़े बड़े हरे वृक्ष लगे हुए हैं और--

ये एक बहुत ही व सुंदर यहां पे रूम बना हुआ है बहुत ही अच्छा फर्नीचर रखा हुआ है।

और बहोत ही अच्छे तरीके से यहां पे--

सब यहां पे रखा हुआ है और--

ये एक कपड़ों का शोरूम है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जॉन्स कपड़े हैं।

और टेबल लगे हुए हैं सोफे लगे हुए हैं ऊपर।

लगाई हुई है और बहोत ही अच्छे से यहां पर ऊपर शेड बनाई हुई है बैठने के लिए--

तरीके से यहां पे रखा हुआ हैं काफी अच्छा लग रहा हैं और--

स्कूल बना हुआ हैं और बिल्डिंग बनी हुई हैं और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाई हुई हैं काफी अच्छा लग रहा है काफी सुंदर भी --

कपड़े रखें हुए है बास्केट रखी हुई है और--

रात का समय है और बहोत सुंदर तरीके से येजलेबिया--

बनाई हुई है और बहोत ही अच्छे तरीके से--

लग भी रहा है टेबल के ऊपर उसने समान--